यह इमेज में बहोत सारे औरतें बच्चे--

और यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं खेल रहे हैं खुद रहे है।

शायद पैर लचक गया होगा उसको सही करने का कोशिश कर रहा है दो लोग उधर से देख रहे हैं और ये--

तीन औरत है एक आदमी है वो टुकनी को बोह के रखा है।

हाथियों का मूर्ति बना हुआ है । तीन बहुत ही विशाल मूर्ति--

बीजेपी भवन के बगल में है राम मंदिर --

यहाँ पे खाना-पीना सब मिलता होगा जिसमें--

और यहाँ पर लोग ए. टी. एम. से पैसे निकालने आते है जिससे उन्हें--

सुखमणि मतलब बैंक नइ जाना पड़ता ए. टी. एम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं।

दूसरे में दो लोग बैठे है शायद ये कहीं जा रहे है ट्रैवल करने या फिर पार हो रहे होंगे --

पेड़ मन है पौधे मन है गार्डन है घूमने के लिए है बैठने के लिए है।

पूरा सजाया गया है ऐसा लगता है यह वेडिंग कार है जिसमें दूल्हा - दुल्हन को बैठालकर --

गुलाब का फूल पिंक कलर का रेड कलर का येलो कलर का--

पूरा तालाब में घूमते है पेड़ भी है पैडल मारते हुए घूमते है मशीन वाला नाव में भी घूमते हैं।

इस इमेज में हमें मस्जिद को दिखाया गया है यह मस्जिद सुकमा के --

मतलब बहुत अच्छा दिखता है रात में लाइटिंग अच्छा दिखता है दिन में भी अच्छा दिखता है लोग यहाँ जाके सुबह --

दराज है वाटर स्प्रे है कटिंग हेयर है।

और यहाँ फैन भी हैं ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ पूजा भाषण हो रहा हैं।

अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं एजुकेटेड होते हैं।

और यहां पर एक इंसान भी दिख रहा है बहुत सारे होंगे बट यह एक हि दिख रहा है और यहां पर--

इस इमेज में हमें बताया गया है कि तीन-चार लोग नदी में उतरे है और एक नदी है इसमें पत्थर है अगल-बगल --

सुकमा जिले के द गादि‍रास गाँव का एक स मंगे नदी है जिसमें लोग --